यहा एक छत्र ढल रहा है। यह छत पर माल चोड़ा कर रहे है। दो कारीगर दिख रहे है।

यहा बहुत बड़ा कमरा है यहा गुलाबी कलर का पुता हुआ है एक गॅस लगा हुआ है और लाइटे जल रही है।

यहाँ बहुत ही बड़ा ज जंगल है इसमे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे--

यहाँ नदी बह रही है यहाँ नदी एकदम हरे कलर का पानी--

और यहा घर उतनी बनी हुई बहुत बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है।